और कोई आदमी नजर नहीं आ रहे हैं। रूम खाली नजर आ रहा है।

ये सब्जी का एक ही दुकान है। यहाँ पे --

एक बहुत बड़ा कुर्सी है जिसपे हम समान चढ़के उतारते भी हैं।